ये पेड़ पौधों की नर्सरी दिखाई दे रही हैं हमें जिसमें कई सारे पेड़ पौधे जो है पौधे छोटे छोटे वो पन्नियों में--

एक कमरा है जिसमें एक तरफ वॉश बेसिन और अह कांच लगा हुआ है।

काफी हरियाली हरे भरे पेड़ हैं ये रात का समय का।

हमें सामने पूरी अलमारियां बनी हुई लकड़ी का जो फर्नीचर का काम होता है। वह बनता हुआ नजर आ रहा है कुछ बना हुआ है।

अह कुछ मकान बने हुए नजर आ रहे हैं और हरी भरी घास और दूर जो है घर के बाहर--

हमें मैदान जैसा पूरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है उस पर रेत दिख रही है।

दो महिलाएं हैं तस्वीर के अंदर एक पीले कलर का दुपट्टा पहनी कुर्सी पर बैठी हुई हैं।